यह एक रॉकेट का पैकेट है जिसमें दस रॉकेट हैं और इन रॉकेटों में एक खास बात है यह सिटी-सिटी बजाते हैं।

ओ उसी के पीछे ही बहोत सारे पेड़ और घर बने हुए हैं।

फ़ोनपे रखे हैं जिससे अपन पेटिऍम कर सकते है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ।

और ऊपर ही एक बिल्डिंग दिखाई दे ड़ही है जो ब्लू कलर और भाइट कलर से पेनटेड है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और इसमें वाशिंग मशीन पंखे टी.वी फ्रिज लैपटॉप बहोत सी सामान है।

और यहाँ दो लोग कट्टे उठा रहे हैं एक जन गाड़ी में है।